नीचे खड़ा हुआ एक आदमी दिख रहा है।

और एक लाइट दिखाई दे रही है जो कि गोल है।

जो कि सुजुकी की ये कार है।

उसके ऊपर बड़ी सी टीन पड़ी हुई है।

इस फोटो में सामने एक डॉक्टर नीलम अग्रवाल का पोस्टर लगा हुआ है।

साइकिल दिखाई दे रही है और सामने लगा हुआ एस_बी_आई का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा ए_टी_एम भी है।

छो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं।

उनके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है।

इस फोटो में सामने तीन गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग ही दिखाई दे रही हैं।

इसके एक तरफ ठेले लगे हुए हैं।

रोड पर से आता हुआ एक लड़का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सामने एक स्प्रे दिखाई दे रहा है।

चेयर पड़ी हुई है तकिए लाल रंग की है।

इस फोटो में सामने चार लड़की दिखाई दे रही हैं।

उन्होंने लाल रंग की चेक बंडी पहनी हुई है।

नीचे की साइड स्टील के कुछ दरवाजे के खांचे रखे हुए हैं।

कुछ दरवाजो का काम चल रहा है।

इसके नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ है।

सामने दो ए_सी दिख रही है।

हमें एक पंखा और एक लाइट दिख रही है जो की छत पर लगे हुए हैं।

और नीचे वुडन फर्श भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक कार वॉश सेंटर दिख रहा है जिस पर एक--

इसके साइड में एक बड़ा सा बुफर रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ स्टैचू पड़ा हुआ है।

और एक ऑक्सीजन मशीन रखी हुई है।

नदी में एक सामने एक खंभा गड़ा हुआ है जिस पर लाइट लगी हुई है।

इसमें ऊपर फोर सीलिंग दिखाई दे रही है जिसपे चौड़ी चौड़ी लाइटें जल रही हैं।

चार आदमी खड़े हुए हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं।

जो कि कुछ बैठे हुए हैं और कुछ लेटें हुए --

इस पर ऊपर सुजुकी लिखा हुआ है।

रेड कलर का सुजुकी का साइन बना हुआ है।

ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर वोडाफोन लिखा हुआ है।

और ये बुक वर्ल्ड लिखा हुआ है।

सामने पालीथीन का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है।

लाल रंग की मेज पर रखे हुए हैं।

पीछे की तरफ एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

ऊपर पंखे दिखाई दे रहे हैं।

इस पर कुछ अंगूर रखे हुए हैं।

इसकी गुलाबी रंग का और लाल रंग का--

इस फोटो पे सामने एक रेलिंग दिखाई गई है।

इस पर एक बड़ा सा टैंकर खड़ा हुआ है।

मैडम ने चप्पल पहनी हुई है और वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है।